फ्लोर स्टैन्ड देखकर बोहोत ही अच्छा लग रहा है। लाइट --

इस तस्वीर में आपको एक छोटा सा केक नजर आ रहा होगा।

पिरु व्हाइट कलर है उसका उसके बाद कुछ --

दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है किन्नूर होटल ।

पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्ट लेटर भी रखा हुआ है जो कि लाल रंग के हैं।

येलो ब्राउन ब्राउन से भी रंग के हैं। एक सांप दूसरे सांप के ऊपर ऐसे पड़े हैं।

जिम जिम की लाइटिंग बोहोत अच्छी है।

इस तस्वीर में आपको म्म लाइटे नजर आ रही हैं। एक दो तीन चार पांच छे इसमें छे लाइटे हैं।

बोर्ड सा लगा हुआ है। धुंधले-धुंधले अक्षरों में लिखा हुआ है। इस पर कुछ नजर नहीं आ रहा आसमान भी नीला है और --

आपको जेह तस्वीर दिख रही है एक रेस्टोरेंट की है इसमें दो लड़के बैठे हैं।

जनरेटर भी दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे रूम है।

इस तस्वीर में आपको एक पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा होगा।

और इसका फर्श बहुत ही सुंदर है। ब्लैक एंड वाइट फर्श है इसका।

इस तस्वीर में आपको सरोज --

यह है एक दुकान दिखाई दे रही है जोकि स्कूटी या फिर ई-रिक्शा --

जोकि हरे रंग की है। स्टेज पर लाइट जच रही है।

केक दिखाई दे रहा होगा बर्थडे केक ।

पार्क सा दिखाई दे रहा है।

और ये पुरुष इस डेरी के बाहर है।